यहाँ शादी व करने के लिए पैसे कि बहुत बड़ी आवशकता होती है।

पर कुछ फंशन किया गया है।

बैंक है यह बैंक बहुत बड़ा है ।.

मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर इस मेडिकल में सभी प्रकार की दवाईयाँ मिलती है लोग यहाँ पर दूर-दूर से दवाईयाँ लेने आते है। मेडिकल का नाम है सलमान मेडिकल स्टोर --